यहाँ पे ताजिया दिख रही हैं। यहाँ पे दो आदमी खड़े हुए हैं। ताजिया बहोत अच्छे से सजी हुई है जो फूलों से अ फुल जिनपे फुल पड़े हुए हैं।

के उपर दो सफ़ेद रंग के तार लगे हुए हैं। यहाँ पे दो तीन पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

ये एक म्यूजिक रूम है जो बहोत ही अच्छा है। यहाँ पे बहोत बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ है जो पीले रंग का है।

यहाँ पे लाइट और कैमरे भी लगे हुए हैं।